बोहोत ही खाली स्टेशन है। यहां पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पे एक पिलर दिखाई दे रहा है बाकी ग्रिल लगी हुई है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

आप देख सकते हैं यहां पे एक नदी है।

आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे।

काफी चीजें आपको यहाँ दिख रही होगीं।

और बहोत ढेर सारे लोग भी हैं। आपको दिख रहे होंगे। कुछ लोग जा रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं।

और ढेर सारे प्लांट्स भी है जिसमें कई तरीके के फूल भी खिले हुए हैं।

रोड टाइप का बना हुआ है। ऊपर ढेर सारे लाईटिंग्स हैं और ढेर सारे लोग भी आपके सामने देख --

और बैंक के सामने एक बाइक खड़ी हुई एक छतरी टाइप का दिख रहा है। ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है।

और खेत में हरियाली भी है और ढेर सारे बच्चे हैं जो बेगस टांग के खड़े है कुछ छतरी ले के खड़े हैं।

और एक पेड़ भी है जिस पे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है और एक जेंट्स पर्सन है।

सब चीज़े अलग-अलग प्रोडक्ट की हैं। अलग-अलग कंपनी की है। अलग-अलग क्वालिटीज़ है सबकी।

और बगल में कुछ क्रीम कलर की चीज दिखाई दे रही है चीज नहीं है मीन्स लाइटिंग टाइप हैं।

और सामने उसका पोर्शन पूरा खुला हुआ है।

पूरा पहाड़ी इलाका दिख रहा है। जंगल टाइप दिख रहा है। पेड़ भी दिख रहें हैं। दो बाइक भी दिख रहें हैं जो रोड के साइड में खड़े हुए हैं।